यहा पर कुछ लोग भी है जो की अपने समान लिए हुए है बॅग में कुछ लोग बस में बैठे हुए है कुछ लोग बाहर खड़े हुए है साइड में का हम्म मोटर साइकल खड़ी हुई है पेड़ लगे हुए है साइड में।

ब्लॅक है और टेबल राखी हुई है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है और पोस्टर लगे हुए है और वो सीसा काच का लगा हुआ है टाईल्स लगे हुए है।

यहाँ पर बाहुबली का स्ट्याचू बना हुआ है जोकि ब्लैक कलर और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए उनके सर में का ताज भी लगा हुआ है।